स्कूटी टाइप के स्कूटर टाइप के रखे गए हैं उसमें सीट टाइप के बनाए गए हैं इधर चियर है।

नीचे कारपेट बिछा हुआ है मार्बल लगा हुआ है कुछ एसी टाइप की कूलर टाइप के लगे।

कुर्सियां हैं जिस पर जेंस लेडीज सब बैठे हुए हैं एक आदमी का चेहरा।

का बनाया गया बहुत सारे बोर्ड है ऊपर में कियर जिम लिखा हुआ है फैन।

एक बहुत बड़ा समंदर दिख रहा है जिसमें बहुत सारे नाव वाव है नाव में डिजाइन दिए हुए हैं नाव को बहुत लाइन से एक जैसा रखा गया है।

भी ले रहा है पीछे फैन है नीचे भी बहुत सारे बुक्स रखे गए हैं।

एक घर दिखाया गया हैजो तो तीन तला है जिसमें विंडोज दिखाए जा रहे हैंजिस पर कांच लगे हुए हैं।

बहुत सारी खिड़की हैंजो नीचे में उसमें प्लाई की गेट वेट लगे हुए बाउंड्रीज की गई है बाउंड्री .

लोहे के पिलर टाइप के दिए गए हैं एक रोड टाइप का बनाया गया जिसमें बहुत बड़ा बड़ा ब्रिज .

सेलोन दिखाया गया है जिस पर एक लड़का बैठा हुआ है चेयर पर और भी बहुत सारी।

पीछे फर्श पर भी बहुत सारे हेयर वेयर गिरे हुए हैं और एक लड़की भी बैठी हुई है।

एक रूम दिखाया गया है रूम में बहुत ही खूबसूती से उसे सजा करके रखा गया है।

वॉल पर टाइल्स लगाए गए हैं नीचे मार्बल लगाए गए कहीं और टाइल्स भी लगाए गए हैं।

एक घर को ढलाई होते हुए दिखाया जा रहा हैजो हाफ ढलाई हो चुका है हाफ ढलाई नहीं हुआ।

मूर्ति टाइप का बनाया गया जिसमें भी पीला कलर की चुंडी दी गई है प्लेट पर गुगुल जल रहे दिया रखे हुए नीचे मार्बल .

काम किया हुआ कृष्ण जी का फोटो है ऊपर कुछ लटका जा रहा है पीछे त्रिशूल भी है फूल बूल भी है।

तीन चार डम्मी दिखाई गई है जिसे रखा गया है और वो कपड़े का कुछ।

छोटा सा सॉफ्ट टाइप का दिखाया गया है जो एक तराज के ऊपर रखा गया है नीचे फर्श परमार।

काम किए गए हैं तीनों डमीज पे अ कुर्ता वुर्ता टाइप का पहनाया गया है कोट हैं हम ऊपर से कुछ--

ब्लू में है कोई घिया कलर में कोई पिस्ता कलर में है और अंदर से टी-शर्ट है।

एक रोड दिखाया गया रोड पर एक आदमी जा रहा है बहुत बड़े-बड़े ब्रिच दिखाए जा रहे।

सामने में एक छोटा सा शॉप दिखाया जा रहा है जो काफी भीड़ है उसमें बहुत सारे बोर्ड बोर्ड लगे हुए हैं।

बहुत सारे छोटे-छोटे शॉप वप है रोड पर बहुत काफी भीड़ है।

बहुत बड़ा मंदिर का दरवाजा टाइप का दिखाया जा रहा है जिसे उस काफी खूबसूरती से बनाया गया बड़े से वृक्ष दिखाए जा रहे हैं तार दिखाए जा रहे हैं।

मंदिर के गेट के ऊपर गणेश जी की मूर्ति है अंदर भी एक और गणेश जी की मूर्ति है लोहे का गेट।

पिलर दिए हुए हैं और उसमें काफी खूबसूरती से कलर शलर्स किए गए हैं बैगनी में पिंक में रेड में ब्लू में।

बगल में एक बाउंड्री टाइप का किया हुआ है जिस पर बहुत बड़े-बड़े पोल है।

बेर है जिराफ है टाइगर है लोमड़ी है मगरमच है पानी ।

अंदर पर कुछ है बोर्ड बोर्ड है पिक्चर्स पिक्चर्स है कुछ समान अनुमान रखे गए हैं टेबल।

एक डांसेस क्लासेस दिखाई गई हैं जिस पर एक लड़की है जो बच्चों को डांसवान सिखा रही है।

एक लेडीज बैठी हुई है बहुत सारे बैग हैं नीचे फर्स्ट पर मार्बल के काम है एलईडी बॉल बॉल चल रहे हैं एक लड़का।

एक छोटा सा कपड़े का शॉप दिखाया गया हैजिसमें बहुत सारे डमी है जो कपड़े-उपड़े पहने हुए कुछ हैंगर प टंगे गए हैं।

जूती जूती रखी गई है लड़कियों के कुछ हैंगर वांगर टाइमे गए हैंएलईडी लाइट्स वाइट्स दिखाए जा रहे हैं बेल्ट बेल्ट रखे गए हैं।

गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है एक गले में माला लिए पहने हुए खड़ा है बहुत सारे आदमी हैं जो पीछे माइक वाइक लेकर के।

और भी कुछ फोटो फोटो पोस्टर वस्टर टंगाए गए एक बच्ची का फोटो है एक आदमी है जो खड़े होकर कुछ कर रहा है उसके पास एक टेबल है।

और बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई है जो बैठ कर के योगा कर रही है कुछ जींस पहनी हुई है कुछ सूट पहनी हुई है लेकिन सभी ।

हुई है एक लड़का भी बैठा हुआ है पीछे एक बोर्ड टाइप का लगाया गया।

छोटा सा ऑफिस टाइप का दिखाया गया जिसमें बहुत सारे चेयर टेबल रखे हुए हैंबहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं।

और एक ब्रेंच पर है फोन है स्लिंग फैन ऊपर लगे हुए हैं एसी हैबहुत सारे विंडोज है ।

एक लड़का है जो माइक लिए हुए हैं और नीचे फर्स्ट में।

बहुत बड़ा सा समंदर दिखाया जा रहा है समंदर पर पिलर्स टाइप के लगाए गए हैं कुछ लोहे के हैं।

छोटे-छोटे घर वर दिखाए जा रहे हैं पानीवानी दिखाए जा रहे छोटे-छोटे घास वास दिखाए जा रहे।

सा ज्वेलरी का शॉप दिखाया जा रहा है जिस पर एक बहुत सारी ज्वेलरी।

हुए हैं एक लड़का खड़ा है जो हाथ पर चेन लिए हुए हैं कुछ चांदी का।

फोन रखा हुआ है कंप्यूटर्स है बहोत सारे और भी सामान रखे गए हैं जिसे कांच के अंदर कभर करके पूरी तरह से रखे गए--

दो सोफा दिखाए गए हैं जिस पर दो कुशन टाइप के लगाए गए हैं दो चेयर है चेयर पर टेबल है टब है।

ईटा का पूरी तरह से बाउंड्री टाइप का बनाए गए एक आदमी है जो कमर पर हाथ दे कर के खड़ा है कुछ ग्रीन कलर के बाल्टी है पिंक कलर के टब है नीचे ।

गोल टाइप का दिखाया जा रहा है जिस पर लिखा गया है टेलिंगड़ास वो।

पानी जमा हुआ है ब्लोरो है मशीन वशिन पानी का टैंकर टाइप का।

रंग के बहुत सारे बाल्टीज रखे हुए हैं कुछ लोहे के पिलर्स रखे हुए हैं रस्सी।

की है मशीन उशीन है अंदर भी बहुत सारे रखे गए हैं कुछ कपड़े उपड़े हैं।

ऊपर कपड़ों से पूरे तरह से उसे डेकोरेट किया गया हैझूमर है झूमर पर लाइट्स का काम है।